बच्चे काफी खुश है अब स्कूल खुल गया है।

और सारी सा मुंड माला ये सब पकड़े हुए हैं।

और ये सारी जो है डिस्प्ले फ्रिज में साफ दिखाई दे रही हैं जो काफी खूबसूरत हैं फ्रेश लग रही हैं हर तरह की मिठाइयां यहां पे अवेलेबल हैं।

जो बहोत ही सुंदर और अच्छी कलर में नेचुरल लग रहा है।

और इलेक्ट्रिक तराजू वगैरह भी रखा गया है मछलियां काफी फ्रेश लग रही हैं।

यह एक थिएटर का फोटो लग रहा है यहां पे आजू बाजू में--

काफी शांति अनुभव हो रहा है।

काफी बढ़िया यहां पे पूजा होती है छठ की ऊपर जो है पुल के ऊपर में बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए हैं।

अं यहां पे तीन जो फिसल पट्टी है वो बनाके रखे गए है।

और अभी मौसम साफ है कुछ लो--

मैदान अभी पूरी तरह से खाली है और मैदान के बीच में जिम करने के लिए यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए है फ्री जिम कर सकते हैं।

जो बहोत खूबसूरत लग रहा है सफेद रंग की पानी की जो धार है।

यहां जो हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में है और फर्स्ट फ्लोर जाने की जो सीढ़ी हैं वो बाहर से है।

यह एक आइसक्रीम पार्लर है जो काफी बढ़िया लग रहा है इसे देखने से और यहां पे जो--

बिग फ्रीजर हैं यहां पे आमने सामने दो ठो रखे गए हैं जिसमें आइसक्रीम है।